चोकोबार और फ्लेवर अनुसार से रखा हुआ है ये--

चॉकलेट भी दिख रहे हैं हार्ड दिल का भी दिख रहे--

एक कार गैरेज है है लगता है जो कार बनने के लिए गई हुई है सामने का पोर्शन --

अं बाकी लोग चल रहे है और हरा भरा है एकदम--

गुलाब से और हरि पत्ते से और रेड

और वाइट कलर की पूरी गजरे दिख रहे हैं सामने--

सामने का बाकी का प्लेटस वगैरह दिख रहे है कुछ--

पटरी है जो रेल चलती है उसकी पटरी है पटरींयो के बीच का तस्वीर है ऊप सामने--

ये खाना खाने का वेकेशन है जो इसमें बर्तन वर्तन रखा हुआ है।

खाने की चीजे रखा जाता है वही यह पानी दिख रहे--

दिख रहा है खाए के बर्तन नजर आ रहे हैं।

पेड़ पौधे हैं एकदम सुकून भरी पार्क है।

ये एक होटल है रेस्टोरेंट लगता है गैदरिंग के लिए।

स्विमिंग पूल है जो पानी नीले दिख रही उधर आवास है।

अंदर रूम लग रहे हैं एक घर का नजारा है।

जिसमें लोग खड़े हुए हैं कुछ पे और नीचे बारिश का मौसम हो रहा है लग रहा था।

ये एक दिवाली के समय लाइट वो जो पटाखे जलाते हैं चकरी।

ये एकअ बड़ा सा ऑफिस है हाल टाइप से जिसमें--

जो योग की क्लासेस ले रहा हैं मैट बिछी हुई है योग का ट्रेनर ट्रेन करा रहा है इनको और ये योगा कर रहे हैं।

ये फेस के लिए है शायद शहनाज हुसैन का नाम लिखा हुआ है चौबीस कैरेट गोल्ड का।

वर्कआउट किया हुआ है ऐसे नजर आ रहे हैं ये।

ओ लोग आना जाना कर रही कुछ सरकारी दफ्तर नजर आ रहे है ये--